और उसके अगल-बगल में झंडा दिख रहा है। ऊपर छत पर मेन झंडा लगा हुआ है उसके बगल में पहाड़ जैसा दिख --

उसके बगल में एक आदमी खड़ा है उसके सर पे हेलमेट है।

उसके बगल में और एक छोटा सा छत है। छत के ऊपर रेलिंग है।